और अगल ब-जिस-हरे घास जमी हुई है अगल बगल हरे पेड़ पौधे है।

ऑटो के पास अगल बगल फुले बानि हुई हैं हरे पेड पौधे हैं और बदल सफेद और नीले हैं।

एक एक मैदान है जी जिस मैदान मे हरी घास जमी हुई है और अलग-बगल रैलिंग की गई है और हरे-भरे पेड़-पौधे भी है।

और अगल बगल में झोपड़ियां भी बनी हुई है रूमे बनी हुई है हरेभरे पेड़ पौधे है बादल जो सफ़ेद है।

एक सौ एक सौ उन उन उन्नीसौ तीस की कंपनी है जिसमे सफेद कलर के पैंट पुते हुए है।

हेलीकॉप्टर के में पंखे लगे हुए है।

एक घोडा एक घोडा जा-क-अ रखा हुआ है और अगल बगल सभी लोग खड़े वे है जा रहे है सब पा- समुद्र मे पानी भरा हुआ सूद उगा हुआ है।

बॉल है जिसमें से वॉलीबाल खेल रहे है मैदान में लाइट लगी हुई है अगल बगल हरेभरे पेड़ पौधे है।

हाथिया है जो लाल वस्त्र पहनाई हुई है फूल माला चढ़ाई हुइ है और अगल बगल दीवारे भी है।